इस इंस्टिट्यूट के बाहर एक रेड --

और लेफ्ट साइड में एक आम घर है व्हाइट और ब्लू कलर का कुछ पेड़ लगे हुए हैं और रोड पे लोग जा रहे हैं और रोड पे एक--

इस पिक्चर में मैंने यह देखा कि यह एक आधार अपना आधार कार्ड को अपडेट कराने का शॉप है और यहाँ पे एक बच्चा बैठा है जो अपना आधार कार्ड अपडेट करा रहा है और दीवार पे --

जिसका नाम है बेकरी वाले दी केक शॉप्स उसके साइड में एक--

इस इमेज में मैंने यह देखा कि यह एक ज्वेलरी शॉप ज्वेलरी शॉप है जो--

इस इमेज में मैंने यह देखा कि ये एक जिम --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

इस चित्र में मैंने यह देखा कि इस चित्र में एक हाथ एक हाथी दिखाया जा रहा है उस हाथी पे एक आदमी बैठा है और वह फोटो खिंचा रहा है और साइड में एक पेड़ हे।

इस चित्र में मैंने यह देखा कि यह एक बार्बर की दुकान दिखाई जा रही है यहां पे एक अंकल खड़े हैं और यह एक और यहां पे एक आदमी खड़ा है जो अपनी फोटो ले रहा है।